ऐंड हमें प्लेटफार्म दिख रहा है। प्लेटफार्म पे एक मार्क दिख रहा है येलो कलर का।

छत का कलर व्हाइट है छत पर नीचे छे पंखे हैं नीचे कारपेट है कारपेट का कलर रेड है।

गाइज एक स्मिंदर की शॉप का व्यू है।

लैपटॉप के सामने एक केयर है जिसका कलर ब्लैक है।

देन दिस इज अ मेरे को सामने एक बिल्डिंग भी दिख रही है।

एंड मेरे को पिक्चर किसी कंपनी की लग रही है जैसे कि नट बोल्ट वगैराह बनने की कंपनी होती है या फैक्ट्री होती है।

एंड इधर सोफे रखें हैं सोफे का कलर रेड है।

आर ओ बेड पे बैठा है चार लोग आपस में बैठे हैं बातचीत कर रहे हैं एक लड़का पीछे देख रहे हैं।

सामने मेरे को एक हल्की सी हट दिख रही है जिसे--

उन सब ने अलग-अलग कलर के कपड़े डाल रखे हैं मैट का कलर पिंक है फर्श पर टाइल लगी हुई है टाइल का कलर ब्राउन है।

एंड इधर बोर्ड्स रखें काफी कपबोर्ड्स इधर सुप्रीम रखा--

और इनको खाना अच्छी बात होती है सामने मेरे को एक रेड कलर की दीवार दिख रही है उनके साइड में एक अंकल दिख रहे हैं जो काम कर रहे हैं।

ब्रेकफास्ट लंच डिनर तो गाइस यहां पे एक ढाबा बोल सकते हैं इसको।

एंड उसपे बहुत सारा झूला बना रखा है सराउंडिंग में पीपल्स वॉक कर रहे हैं।

एंड ये जू के बाहर का सीन है बीकॉज इसके डेकोरेशन देख के ही पता लग रहा है गाइज ।

एंड वो जिस पे खड़ा है उस फर्श का कलर ब्राउन है।

फौजी का सेलर है इन्होंने अपनी कई गाड़ियां लाइन में लगा रखी हैं जैसे --